सजाया गया है जिसमें काफी डेकोरेशन की गई है बर्थडे पार्टी के लिए कुछ बैलूनस है गुब्बारे है कलर कलर के--

दो तीन लोग दिखाई दे रहें है ऊपर खुला आसमान ।

यहाँ पर एक जगह है जो की काफी पक्की जगह है जिसमे टाईल्सए लगी हुई है।